सामने एक बड़ा सा गेट है। ब्लैक कलर का उसपर नगर पंचायत जनकड आपका हार्दिक स्वागत करता है लिखा है उसके नीचे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं।

सामने से एक पेड़ पौधे हैं। सामने और एक खुला शडक डली हुई है और कांच की दीवारें हैं और साइड से कुछ खिड़कियां --

एक पुरानी सी इमारत बनी हुई है अल पथ्थड़ की उसके चारो तरफ पेड़-पौधे बने हुए है और छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं रेड कलर केचारो तरफ पेड़ पौधे हैंबगल से गिट्टियां बानी हुई हैं कुछ --

आ सामने एक स्टेज है | जिसपर अ कुछ फूलों से सजावट हो रखी है | कुछ आ कुछ रंग-बिरंगे फूल हैं | कुछ सामने से लाइटिंग आ रही है | ग्रीलिंग लगी हुई है और चारों तरफ लाइटिंग ल --

सामने सूरज का अ-उग्ता हुआ सूरज है। डिवाइडर है जो कि येलो और ब्लैक कलर का ड्राइव डिवाइडर है। चारों तरफ से दुकाने खुली हुई हैं।

वहां एक ब्लू कलर का बोर्ड पर एस.बी.आई. लिखा हुआ है और एक आह संसद बना हुआ है | चारों तरफ से उसमें प्रिंटिंग हो रखी है। बाहर कुछ वाहन चल रहे हैं | ई-रिक्शा है बगल में एक गाड़ी रखी है व्हाइट कलर की।

से साइकिल की तरफ एक आदमी है एक लड़का है सामने एक खम्बा है जिसमे एक कुछ लाइटिंग निकली हुई हैंबगल से कुछ डेकोरेशन हो रखी है पत्तो की और एक स्कूटी है।

सामने एक बड़ा सा हॉल है | उसमें चारों तरफ से लाइटिंग की फिनिशिंग हो रक्खी है और कुछ पंख लगे हुए हैं | नीचे एक टेबल है | जिस पर ब्लू कलर का आ इस् आ एक स्टॉल डली हुई है | मिक्स से इसका --